एवं दूर-दूर से लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते है बहुत ही प्रसिद्ध जगह पे बनाये गए है।

ये स्कूल बहुत ही नामी स्कूल एवन --

यहाँ सब कोई अपना-अपना फूल कागज का फूल बना रहा है।

ये बहुत ही अच्छी तरह से है देखने में यह बहुत--

स्टूडेंट सब यहाँ पढ़ने के लिए आते है बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ।

प्रसिद्ध जगह पे बनाये गए है इसको देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते है।

यहाँ मछली मार्केट यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे मछली --

मिलते है बहुत ही किस्म के मछली मिलते है।

दिखने मे बहुत ही अच्छे है एकदम बहुत ही प्रसिद्ध जगह है ये।

फ़ोटो वोटों लेते है शाम का टाइम मे तो यहाँ का नजारा बहुत सुंदर होता है।

यहाँ एक मंदिर है जहां लोग पूजा करने के लिए आते है ।

सुंदर है बहुत ही शानदार है।

सुंदर है एवं बहुत ही अच्छे इलाके मे बनाएं गए है।

मीटिंग कर रहे है सबकोई।